और चद्दर यहाँ पर लगा हुआ है कच्चा इनका घर बना हुआ है और मिट्टी है नीचे --

ये एक जनरल शॉप दिखाई दे रही हैं। कोका-कोला है इस पर पेड़ एक नीम का पेड़ लगा हुआ है।

यह एल.एम.एस. कॉलेज का गेट है और इधर बाइक खड़ी हुई है कुछ लोग अंदर है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

अ डिजाइन बनाई हैफर्श बहुत क्लीन है चार दो सोफे हैं और एक बड़ा सोफा है तो साथ में उसके पीछे भी सोफे रखे हुए हैं ।

ये एक मस्जिद दिखाई दे रही है जिसका स्ट्रक्चर बड़े ही प्र प्यारा है।